किया जाता है तथा तरह तरह के इनफार्मेशन दिए जाते यहाँ पर सामने में दो रेस्टोरेंट दिखाई पड़ रहे हैं ।

हेडक्वार्टर लिखा हुआ है | यह काफी अच्छा रेस्टुरेंट --

पेड़ दिखाई पड़ रही है। इन हिरणो के झुण्ड को तार के एक साइड रखा गया ताकि किसी को कोई नुकसान नहीं--

जहाँ पर लोग मॉर्निंग उठकर अपने आप को हेल्थी रखने के लिए इस साइकल में साइकिलिंग करते हैं जो लोग बाहर--

भीड़ दिखाई पड़ रही है कुछ लोग मंदिर के अंदर हैं तथा बहुत सारे लोग --